बैग काला है और आस-पास में गाड़ियां निकल रही हैं और इसमें बैठने के लिए सुरक्षित सीटें हैं।

इसमें एक पटरी खाली है और दूसरी पर ट्रेन आ रही है। ट्रेन का रंग --

और नीचे धरती पर फर्श बिछा हुआ है और यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ है।

यही एक बस है और इसपे लिखा है बाइ बी.एस. ये है सफेद कलर में है और इसके इसमें काले रंग के कांच लगे हुए हैं।